और ये एक थोड़ी बड़ी सी मूर्ति इस पर बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ब्राउन कलर का गेट भी नजर आ रहा है।

इमेज में एक केक कैफे दिखाई दे रहा है अ-- जिसके सामने एक ऑटो रिकशा खड़ी हुई है ब्लैक और येलो कलर की यहाँ पर एक बाईक एक्टिवा और साईकल भी नजर आ रही हैं।